दो ट्रैन है और बिजली के तार है।

और यहा बहुत सारा समान रखा हुआ है यहा कुछ पेन रखे हुए है यहा कैलकुलेटर रखा हुआ है यहा कुछ बुक्स रखी हुई है।

यह एक गार्डन है यहाँ बहोत सारी बेंच लगी हुई हैआसपास बहोत सारे पेड़ पौधे हैंऔर यहाँ बच्चे खेल रहे हैंऔर आसपास बहोत सारी बिल्डिंग हैं।

और आस पास बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए है और कुछ चैयर भी रखी हुई है।

यहाँ एक बिल्डिंग बनी हुई है बिल्डिंग का कलर पीला और लाल है।